ये रेस्टोरेंट है और यहाँ दूर-दूर से आदमी रहने के लिए आते है देख सकते है और ये इसके आगे साइड में कितना बड़ा तालाब है देख सकते है ये कोई कोई नहाने के लिए आते है और यहाँ पे मछली --